यहाँ बहुत सारा दरवाजा है और बहुत सारा खिड़की भी है ।

यू.एस.बी. पावर सप्लाई सब के बारे में बोहोत सारे --